किनारे में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यहां पर एक घर है।

नीचे बहोत सारे बाइक खड़े हैं।

सामने सी. वन सी. वन के दो फोन है। सिक्स के के तीन फोन है।

जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है।

जो कि सफेद रंग की है।

और उसके ऊपर एक बल्ब है जो कि सफेद रंग का है।

नीचे बहुत सारे कपड़े हैं।

कुछ फ्रॉक हैं कुछ सूट हैं।

साइड मे एक पीड़ा है और बहुत सारे ध्वजाएं हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है।

बगल में एक छोटा- सा और मंदिर है।

जहां पे एक लाल रंग की फोर व्हीलर खड़ी है।

जहां पर बहुत सारे टीशर्ट रखे हुए हैं।

और नीचे बहुत सारा टी शर्ट और पैंट रखा हुआ है।

यह एक आदमी का चित्र है।

पीछे पीले पीले रंग के ग़ुआरस हैं।

यह एक घर का चित्र है जहां पर बाहर में बहुत सारे लोग खड़े हैं ।

पीछे में तीन चार महिलाएं खड़ी हैं और दो बच्चे खड़े हैं।

महिलाओं ने लाल और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है।